और उसके आगे कुछ खंडर है। थोड़ा जहा अंडा पड़ा है।

दो आदमी हैं जो पिक्चर ले रहे है| बाजु में दो पिल्लर भी हैं जो अच्छे दिख --

यहाँ देखिये यह कोई शॉप है इसमें अच्छी टेबल है ए_सी लगी हुई है दो कुछ बोर्ड भी है कांच का गेट है।

और इसके ऊपर लाइट लगी हुई हैं और उसकी साइड में जो है वो पेडा है जो बोहोत काफी बड़ा है। नीचे दो व्यक्ति हैं जो एक साइकिल से जा रहे हैं।

है और ये दो मंजले का | यहाँ पर कई प्रकार की जाँच हैं |